यहाँ पर लक्ष्मण जी और राम जी धनुष पकड़े हुए है दोनों लक्ष्मण जी तीर रखे हुए है सीता जी फूल रखे हुए है हाथ में और यहाँ पर राम जी और सीता जी की मूर्ति को बहुत ही ज्यादा अच्छा सजावट की--